यह एक मैरिज प्लेस का स्टेज है।

दो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं।

पानी का रंग ग्रे और हरा है।